स्टेट बैंक ए_टी_एम है और होटल मीना क्रि-- कृष्ण का है।

और उस साइड उसके पीछे में भी एक घर--

ये दुकान है और उधर भीड़ सब है हैवेल्स का बैनर लगा हुआ है स्टील वाला जो सीढ़ी सब लगता है वो सब है।

नारियल का पेड़ का पत्ता है जो झुका हुआ है और पानी की लहरें हैं और इधर सॉइल मिट्टी सब है इधर बादल--

बैंक ऑफ इंडिया ए_टी_एम है और नीचे जमीन है एक बाइक है इधर कोना में लेकिन थोड़ा-सा फेस दिखाई दे रहा है ऊपर जमीन है शीशा लगा हुआ है। बाहर में --

ये कराटा क्लास तो नहीं है मतलब वैसा ही कोई अरे हॉल ऐसा ही कुछ है।

ये डान्सर लेडिज सब है और डांस कर रही है पीछे मंडप लगा हुआ है।